पीछे की तरफ दो टॉली हैं जिनका रंग पीला नीला और पीला लाल--

जिसमें पानी को स्टोर किया गया है और उसमें कई सारे कछुए दिख रहे हैं।

उसके आसपास कई सारे आकार के पत्थर रखे हुए हैं जिनमें से कई काफी बड़े हैं तो कई छोटे हैं।

नदी में ही हमें छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

एक मशीन का रंग नीला और ग्रे है।

इस इमेज़ में हम पीछे की तरफ पीले कलर की दीवाल देख सकते हैं।

उसके आगे एक आदमी भी खड़ा है जिसे पादरी बोलते है।

साथ ही साथ अगल बगल मिर्ची लाइट से भी राउंडिंग की गई है और लकड़ी के दरवाजे भी है।

जोकि हरे कलर की है जिसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और खड़े भी हैं बस पर बंदीपुर टाइगर रिजर्व लिखा है।

उसके नीचे की शटर खुली है और अंदर की तरफ टेबल कुर्सी रखे हुए हैं और पीछे एक पर्दा भी टंगा है जोकि नीला है।

जो कि एक कतार में है और ये सब अलग अलग आकार के हैं।

इस इमेज में हमें कुछ लोग खड़े तो कुछ बैठे दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर दीवाल पर एस_बी_आई इंग्लिश में और बंगाली भाषा में चीजे लिखी गई है।

जिस पर हिंदी में नवाबगंज पक्षी विहार में दिखने वाले कुछ जलीय पक्षी लिखा हुआ है।

जिसमें से एक आदमी बैठा है उसके पास बल्टी है।

और एक आदमी खड़ा है जो कि कार के पास ही है।

इस इमेज में हम पीछे की तरफ बड़े बड़े मंदिर देख सकते हैं जो कि सफेद कलर के हैं।

कई सारे लोग भी दिख रहे हैं जो की एक डायरेक्शन में जा रहे हैं।

सामने ही एक आदमी खड़ा है और एक आदमी का हाथ दिख रहा है।

इस इमेज में हम एक बोर्ड देख सकते हैं जिस पे मां विद्या कंप्यूटर सेंटर इंग्लिश में और जय मां विद्या स्वीट्स हिंदी में लिखा है।

दाएं साइड में एक छोटा सा पानी का नहर भी है।